आदमी दिख रहा है एक मोटर साइकिल भी बहोत लंबी जगह मे महाविद्यालय बना हुआ दिखाई दे रहा है कान्क्रीट ब्लॉक का रास्ता भी बना हुआ दिखाई दे रहा है जो देखने मे बहोत अच्छा लग रहा है।

मकान भी बने हुए है बिजली भी के खंबे दिखाई भी दे रहे है वृक्ष भी दिखाई दे रहे है नीले कलर का बादल भी दिखाई दे रहा है जो देखने मे बहुत अच्छे लग रहे है।

और यहाँ पर च चैनल का एक टावर नेटवर्क टावर भी लगा हुआ है बहुत गंदगी फैली हुई दिखाई दे रही है और बोर्ड भी डला हुआ है।